एंड एक टीचर खड़ी हुई हैं जो कि मास्क लगाई हैं।

ये बच्ची कुछ जैसे सिल रही है लग रहा है।

इन दो नावों नदी के बीच धारा क सीन है।

कुछ पंछी भी उड़ रहे हैं जिनका सीन दिखाई--

किसी चीज का पोस्टर भी लगा हुआ है।

इस इमारत के आगे एक आदमी खड़ा हुआ है।

झरने से पानी नीचे की ओर बेह रहा है पास झाड़ियां है ऊपर पहाड़ जैसे हैं।

ये लोहे वाला काम चल रहा है।

बहोत सारे लोग लाइन में रख खड़े--

एक आदमी उसके बगल में खड़ा हुआ--

यह एक विष्णु पंजाबी ढाबा का सीन है।

इमारत के अंदर भी बहुत लोग खड़े हुए है।

ये शोरूम लग रहा है जिसमें एक लड़की के ऊपर कपड़ा पहनाया गया है।

यह एक पहाड़ का --

थोड़ा सा पेड़ की एक झाड़ी की फोटो आई है ऊपर।

झाड़ियाँ दिख रही हैं। पहाड़ के ऊपर का सीन लिया गया है एकदम टॉप का।

चीजे इसमें रखी हुई है जिम करने वाली--

पानी की टंकी रखी हुई है और डे--

यह एक ग्राउंड लग रहा है जिसमें हरी कलर की लाइटें जल रही हैं एंड ग्रीन कलर की घास भी है।

एक लाइट जल रही है उसके पीछे जस्ट एक बिल्डिंग बनी हुई है एंड एक खंभा लगा हुआ है।

एक आदमी खड़ा है जिसकी थोड़ा शैडो दिख रही है ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा हुआ है।

एक कार है रेड कलर की रेड और ब्लैक में उसमें छोटा सा एक बच्चा बैठा हुआ है।

और एक लेडी है जो बुरखा पहनी हुई है उसके पीछे आगे सब इमारत बनी हुई है और इमारत के पास ही सब लोग खड़े हुए हैं।